इस चित्र में ग्राउंड दिख रहा है ओवर ग्राउंड के अन्दर क्रिकेट खेलने केलिए विकेट्स लग रहा हे ासवेर चारा दिक् रहा हे और जमीन दिक् रहा हे जमीन पर वाइट लाइनर जाना हे |